एक बहोत बड़ा सा फ्लैट टाइप का दिखाया जा रहा है जो की काफी बड़ा है एक गेट टाइप का बना दिया गया है बहोत सारे पोल है।

पोल पर लाइट वाइट लगा दी गई है बीच में रोड ओड है छोटे-छोटे घांस वास है बड़े-बड़े से साइड में नारियल के गांच वाच लगा--

दी गई है और साइड में छोटे छोटे पौधे औधे भी लगा दी गई है बहोत सारी विंडो उन्डो भी दिखाई जा रही है बालकनी --

एक पाक टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें स्लिप करने वाला है जो कि रेड कलर का है राउंड शेप है बीच में फूल है और चारों ओर से है एक ब--

जी है जो कि इस पे बैठी हुई है वह फ्रॉक पहनी हुई है लेगिंग्स पहनी हुई है और ऊपर स्वेटर पहनी हुई है ।

और नीचे पे ढलाई टाइप का छोटा सा कर दिया गया है लोहे के सीढ़ी लगा दी गई है पाइप है बीच में मट्टी है छोटे-छोटे घास वास है एक लेडीज साइड में बैठी है।

कांच से पूरी तरह से कवर अप है बहुत सारे पोल है पोल पर तार--

और साइड में कुछ मार्बल लगा दी गई हैं गमले हैं गमलों में चारों ओर--

एक जिम का क्लास दिखाया जा रहा है जिनमें कि एक लड़का है जो कि सो करके कुछ जिम विम कर रहा है और वो उसके पास--

अ दो डंबल्स भी रखे गए हैं और ऊपर नीचे करने वाले भी है जो वो हाथ से पकड़े हुए हैं नीचे फर्स पर मार्बल है बहुत सारे एल_ई_डी लाइट --

एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जिनमें बहुत सारी लेडिस वेडिस है जो कि योगा कर रही हैं सभी कोई कारपेट बिछा करके योगा कर रही हैं सो कर कर करके।

और सभी के कार्पेट के कलर है कोई ब्लू में है कोई पिंक में कोई रेड पर है और नीचे छोटे-छोटे घास वास है म--

एक कॉफी शॉप टाइप का दिखाया गया है जिसके ऊपर पे काफी सारे अ बल्ब लगा दी गई है।

और चेयर्स है टेबल है टेबल पर दो आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी बगल में बैठे हुए जो फोन पे कुछ कान पर सुन रहे हैं।

एक ऑफिस टाइप का दिखाया जा रहा है जिनमे लिखा गया है साई इन श्याम आर्केड और बहुत--

और स्टील की ग्रील टाइप के दे दिए गए है रोड में काफी सारे पत्ते वत्ते फैंके हैं।

और पानी के बीच बीच मे भी कुछ फूल वूल के काँच वाच दिखाए जारे छोटे छोटे घास वास भी है काफी सारे--

और एक का ब्लू कलर का ड्रम रखा गया है पूल है पूल पर् काफी सारे पोल हैं जिनमें लाइट है और बगल बगल में--

नारियल वारियल की गाज वाज टाइप के लगा दी गई है एक बैनर लगा दिया गया हैं।

बालू रखा गया है गिट्टी रखी गई है और कुछ मिट्टी को ऊपर उठा करके रखे--

वाइट है सीढियों की साइड मे स्टील के ग्रील दे दिए गए है बहार में बहुत सारे गमलों मे पौधे वोधे लगा दी गई--

एक बोर्ड है बोर्ड पर लिख दिया गया है कुछ एक जेंट्स है जो कि फोन में बात कर रहा है बाहर पे कारपेट बिछे है।

जंगल दिखाया जा रहा है जंगल पर एक हाथी को दिखाया जा रही है और कुछ पेड़ वेड है जो की काट करके वो डाली वाली गिरा--

एक बहुत बड़ा सा समंदर टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे साइड मे नाव वाव हैं।

जो रखे गए हैं सभी को साइड में बाँध बाँध करके सभी नाँव सेम् है किसी के बस ऊपर पे कलर यल्लो पे है।

और सीलिंग फेन लगा दी गई है और लाइट्स हैँ ग्रीन मे हैं।

पत्ते वत्ते है नीचे पे ग्रीन ग्रीन कार्पेट बिछा दी गयी है बहोत सारे कैमरे है स्टैंड लगा दी गयी है कुछ कैमरे वाले फोटो वोटो क्लिक कर रहे है।

जाली जाली कर दी गई है बहुत सारे कपड़ों लटकाए हैं बहुत सारे लड़की लड़के बच्चे बै--

और चारों ओर छोटा सा बाउंड्री टाइप का कर दिया गया है और यह स्टील दे दी गई है बीच-बीच में--

और वॉल पर लिख दिया गया है बर्थडे बंद ऑटो केयर नंबर दे दिया गया है और एक--

मिट्टी के रास्ते टाइप के बना दिए गए हैं छोटे-छोटे घास वास है खेत वेत की दिखाई जा रही है।

ये बाउंड्री टाइप दिखाई जा रहा है एक छोटा सा ढलाई टाइप किया गया जिनमें कुछ कपड़े वपड़े पसारे गए हैं।

पत्थर वथ्थर भी दिखाई जा रही है तलाब के पास पर एक आदमी को दिखाया जा--

एक ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ बगल मे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है पेड़ पर बहुत सारे आदमी ऊदमी चढ़े हुए हैँ साइड मे भी बहुत सारे आदमी बैठे हुए जो देख--

एक और लड़का बैठा हुआ है कांच का टेबल है फिर टेबल पर कुछ पानी के बोटल भी रखे गए है कुछ भगवान के फोटो है और कुछ डब्बे उब्बे भी रखे गए--

गाड़ी टाइप का रखा गया है बहुत सारी मिट्टीयां हैँ और मिट्टी के पास मे एक बैग है बैग --

बहुत सारे बैग वेग हैं एक लेडीज और एक जेंट्स है जो हाथ पकड़ कर खड़े है दो लड़कियां खड़ी है पानी के अंदर भी बहुत सारे हैं।

एक ऑफिस रूम टाइप का दिखाया जा रहा है जिनके पास एक टेबल है टेबल पर कॉलिन रखा गया है।

और कुछ मशीन वसीन रखे गए हैं पीछे पे दो और चेयर रखे गए हैं भगवान का सिंघासन रखा गया है।

और बोर्ड है बोर्ड पे तार वार है और नीचे पे ब्लू कलर की कुछ दरी वरी बिछा--

एक शोरूम टाइप का दिखाया जा रहा है जिसके बहार पर बहुत सारे फोर व्हीलर उर खड़े है स्कूटी खड़ी है बाइक वाईक खड़े है टायर रखे गए--

और ऊपर पे बेलकनी टाइप का बना दिया गया जिसमे स्टील के पूरी तरह से दे दिए गए है एक बोर्ड है बोर्ड पे लिखा गया--

अंदर मे काफी सारे पेड़ वेड दिखाई जा रही है बॉउंड्रीया है बॉउंड्री पे ब्लू कलर कर दी गयी है।

बाहर पे दो-तीन स्कूटी खड़ी है एक बाइक खड़ा है कच्चा रास्ता टाइप का--

एक घर दिखाया जा रहा है जिनके ऊपर पे टीना लगा दी गई है और वो घर पूरी--